यह एक ट्रैक्टर का टायरों की दुकान है।

कलर की कार खड़ी हुई है और दीवार का कलर ग्रीन है।

कुछ है जिसमें बहुत सारी कार खड़ी हुई है और इसके बाहर एक स्कॉटेगार्ड भी खड़ा है।

और बहुत सारे लोग और बाइक खड़ी हुई है और सामने एक टीम का फार्म हाउस है।

का पाड़ है उसके अंदर इंसान--

बाइक खड़ी हुई है बाइक पे एक हेलमेट भी है और सामने एक जामन का पेड़--

उसके साइड में एक छेद करने की मशीन है।